हमें एक छत दिखाई दे रही है जिसमें जालियां लगी हैं।

हमें इस तस्वीर के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

उसमें हमें ऊपर सबसे ऊपर सेंट्रल मॉल लिखा दिख रहा है।

बहुत सारी हमें मशीनें रखे दिखाई दे रही हैं जिम में।

तस्वीर के अंदर हमें सड़क दिखाई दे रही है और उसमें पानी भरा।

और वहां ज्वेलरी बनी हुई है पोस्टर में।

भगवान की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं उस पर एक माला चढ़ी है।

नीला-नीला पानी दिखाई दे रहा है तालाब में।

इस तस्वीर में हमें हरी हरी घास लगी दिख रही है।

नारंगी सफेद और हरे रंग के बलून --

हमें दिखाई दे रहा है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ये।

सफ़ेद हमें बिल्डिंग पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया --

और बिजली के तार भी हमे नज़र आ रहे है।

लकड़ियां लगी हुई हैं और लोहा बिछा हुआ है छत पर।

हमें दिखाई दे रही है बहुत सारा भूसा भी पास में उनके पड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं आदमी बैठे हुए हैं।

एक का चेहरा हमें दिख रहा है बाकी के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे।

तस्वीर के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके चेहरे पर मास्क लगा है।

एक कोट रखा हुआ है नीले रंग का अ टेबल के ऊपर।

इस तस्वीर के अंदर एक बाइक खड़ी है काले रंग की।

बाकी खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं।

हमें बहुत सारे बच्चों के कपड़े और--

और एक बोतल रखी हुई नजर आ रही है।

और ऊपर हमें लाइटे जलती हुई और शॉप नजर आ रही हैं।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहे है।

ऊपर सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

ए_सी लगे हैं और छत में पंखे लगे हैं।

तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रही है बहोत सारी मिठाइयां है।

पीछे एक और आदमी खड़ा हुआ है नीली टी_शर्ट में।

तस्वीर के अंदर हमें सड़क दिखाई दे रही है।